दूर दूर में बहुत से ग्राउंड दिखाई दे रहे हैं और बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं और जंगल दिखाई दे रही है।

एक फ्लैट सर्कल दिखाई दे रहा --

एक ट्रक लगा हुआ दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर एक पटरा लगा हुआ है।

इस चित्र में एक बड़ा सा रूम दिखाई दे रहा है जिसमें दीवाल का कलर वाइट है।

इस चित्र में एक तीन तल्ला मकान दिखाई दे रहा है जो की ब्लू और वाइट कलर का है जो कि किसी सरकारी विभाग का है।

इस चित्र में एक एकतल्ला मकान दिखाई दे रहा है जिसमें दीवार ग्रीन कलर का है।

तीन चार बोरे दिखाई दे रहे हैं व्हाइट और येलो कलर के।

बहुत सी दवाइयां रखी हुई दिखाई दे रही हैं इसके ऊपर भी बहुत से दवाएं रखे हुए दिखाई दे रहे --

एक बड़ा सा वाइट कलर का पट्टी दिखाई दे रहा है जो कि बाउंड्री का है उसके बगल में एक कवर रखा हुआ है जो कि ब्लू कलर का है बहुत बड़ा है।

एक लाइट जल रही है एक पंखा दिखाई दे रहा है।

इस चित्र में एक तीन तल्ला मकान दिखाई दे रही है जोकि पीले कलर की है।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

पीछे में तीन चार घर दिखाई दे रहे हैं एक मंदिर दिखाई दे रही है जो कि लाइट से सजा हुआ है।

चित्र में कोई गाड़ी का शोरूम दिखाई दे रहा है एक बड़ा सा शीशा लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

एक पोस्टर लगा हुआ है जिसमे थ्री टू टैंगो लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

दीवाल के ऊपर एक कोट लग लिखा हुआ दिखाई दे रहा है उसके बगल में एक और पोस्टर दिखाई दे रही है।